प्लास्टिक की बाल्टियां और टब भी दिखाई दे रहे हैं।

घर में लाइट्स लगी हुईं हैं स्टूल दिखाई दे रहा हैं सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

चेयर भी दिखाई दे रही है दीवार दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।

और बहोत बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक छत दिखाई दे रही है छत पर पंखे लगे हुए हैं।

पुरानी दीवार दिख रही है और झाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

खेत में पानी दिखाई दे रहा है।

स्कूटर दिखाई दे रहा है और शीशे का बहोत बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

और छत दिखाई दे रही है दीवार दिखाई दे रही है दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ है।

कैमरा दिखाई दे रहा है फर्श दिखाई दे रहा है फर्श पर टाइल्स लगी हुई है।

और साइड में बहोत सारे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर रोड दिखाई दे रहा है बहोत सारी--

और स्टैचू दिखाई दे रहे हैं छत दिखाई दे रही हैं छत पर लाइट्स दिखाई दे रहीं हैं।